एक भगलपुर की डेरी है ज- ज जो का- जो उसके एक ब्रेड सामने रखा हुआ है और कुछ बॉटलें है और उसके बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है और अगल-बगल दीवार--

सुधा मिल्क पार्लर है उसके बाहर एक एक छोटा-सा डंपर खड़ा हुआ है और उसके बाहर आदमी खड़ा है और उसके गाड़ी--

एक बड़ा-सा हाँल है जो टेबील एंड कुर्सियां अ बगल मे रखी हुई है।

एक नदी बांध है जिस नदी बांध में ये अगल-बगल कुछ दिवारे बने हुए है और एक लड़का पानी के अंदर खड़ा है।

एक चर्च है चर्च के बाहर दो लोग खड़े हुए है और बाहर मैदान है जिसमे हरा घास जमा हुआ है और कुछ औरतें भी आदमी भी बाहर खड़े है।

एक नदी है जो नदी से पानी बह रहा है बहोत सारे बिंल्डिगे घरे है और हरे पेड़-पौधे भी है और हरे पेड़-पौधे--

और कुछ टेबले रखी है कुर्सियां रखी हुई है।

एक बड़ा सा फ्रंटलाइन की पोस्टर बना हुआ है और बाहर कुछ बड़े आ- बसे आ- रिक्शे और ऑटो गाड़ियां चल रही है।

नीचे ऐसे ही झोपड़ी बनी हुई है और उसके बगल में कुछ बालूसाही गुलाब जामुन का चित्र है और उसके पीछे एक हरा पेड़ है।

स्टेशन स्टेशन के बाहर गाड़ी रिक्शे ये बसें इस- और मैजिक कैन खड़ी हुई हैं।

कुछ लोग आ जा रहे हैं और कुछ लोग ठेली के पास बैठे हैं।

मैदान है जिस मैदान में हरा घास जमा है और एक झोपड़ी है जिसमें गाय बंधी हुई है।

एक नदी है जो पानी बहा रहा है और पानी हरा है और एक आदमी पानी के पास खड़ा है और बगल में हरा हरा पौधा है।